यह एक निर्माण मकान दिख रहा है इसमें कई वर्कर कार्य कर रहे हैं एक पीले कलर का हेलमेंट पेहने हुए है।

यह एक इंस्टिट्यूट है जो कि बहुमंजिला है इसके बाहर एक गार्ड बैठा हुआ है उसके अंदर कुछ लाइटे जल रही है कुछ रूम की लाइट भी जल रही है।

यहा पर काफी सारी गाड़ियां रखी हुयीहुई नजर आ रही है यहा पर एक कार भी रखी हुई है जो कि व्हाइट कलर की है यहा पर कुछ मकान बनते हुए नजर आ रहे है।